टूल रखे हुए हैं भी है भी है बहुत सारे प्लास्टिक के कुर्सी है बहुत सारे रबर की कुर्सी है।

गम रखा हुआ है पेंसिल रखा हुआ है यहाँ पे एक लड़का है जो पीला कलर का हाफ टी-शर्ट पहेना हुआ है ब्लू कलर का जीन्स पहेना हुआ है वाइट कलर का मास्क लगाया हुआ है पीछे गमला भी है फूल लगा हुआ है उसमें--

यहाँ बहोत सारे आदमी हैं बैठे हुए है वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए हैं इधर एक लेडीज़ भी बैठी हुई है जो साड़ी पहनी हुई है।